पीछे बना हुआ है घर उसके बगल में बहुत सारे जगह खुले हुए हैं उसके बगल में ट्रांसपेरेंट बना हुआ है उसके बगल में रेड कलर का --